यह तस्वीर फेडरल बैंक का एटीएम का है।

ये एक खाली कमरा है बैठने की भी जगह दी हुई है इसमें।

दो लेडीज कुर्सी पर बैठी हुई हैं।

ग्राउंड का लग रहा है इसमे--

यह तस्वीर में एक कमरा का दरवाजा भी नजर आ रहा है।

पुतला जो है नारंगी कलर का टी-शर्ट पेहने हुए है और काला कलर का ट्राउजर पेहनी हुई है।

इस तस्वीर में दो पुरुष नजर आ रहे हैं एक पुरुष के पीठ पर बैग लटका हुआ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक महिला झाड़ू लगा रही है।

अर्ध नगन व्यक्ति बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में तरह-तरह के पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

जिसमें मेंस पैजामा का बैनर लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक गार्ड भी नजर आ रहा है।

तरह-तरह की ट्राउजरें नजर आ रही है और तरह-तरह की टी-शर्टें भी नजर आ रही है।

पराठा बटर से सेकी हुई भी है।

यह पराठा प्लेट में रखी हुई है और टेबल के ऊपर रखी हुई है।

यह तस्वीर एक बिल्डिंग की है।

और एक बहार जाने का दरवाजा भी है।

इस तस्वीर में हरी भरी घास नजर आ रही है।

यह तस्वीर एक पार्क का लग रहा है।

इसमें एक लंबी सी पूल बनाई हुई है।

उस घर में दो खिड़कियां भी नजर आ रही हैं।

दो महिला चटाई पे योगा कर रही हैं।

सभी आ हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं।

और एक अंदर जाने का गेट भी नजर आ रहा है।

इसमें योगा का काम चल रहा होगा।

इसमें भारी भरी पत्ते नजर आ रहे हैं।

एक पुरुष बाइक पे सवार नजर आ रहा है।

यह तस्वीर में बहुत सारी बिल्डिंगे भी नजर आ रही हैं।

यह तस्वीर मानस स्टेशनरी का है।

यह तस्वीर एक रिजॉर्ट का लग रहा है।

चार कुर्सियां भी नजर आ रही हैं।

पांचों महिला अपने-अपने पैर ऊपर करके--

सभी रंग-बिरंगे चटाइयां पे खड़े होकर योगा कर रही हैं।

यह तस्वीर एक मस्जिद का लग रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारी ईंटें भी नजर आ रही है।

घर बनाने का काम चल रहा है।

यहाँ पे तेल की बहुत सारे रंग-बिरंगे बोतले रखी हुई है।

यह तस्वीर एक खुली पार्क की नजर लग रही है।

इस तस्वीर में एक पोल भी नजर आ रहा है जो तारे से लपटी हुई है।

इस तस्वीर में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

अपने फोन के कैमरे से तस्वीर ले रहा है।

यह तस्वीर एक सिनेमा हॉल का है।

में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे नजर आ रही है।

कार भी खड़ी है दूसरी ओर एक बाइक भी लगी हुई है।

एक मारुती सुजुकी की का बैनर भी नजर आ रहा है।

दो पुरुष बिल्डिंग कि और देख रहे है।

और ब्लू कलर का जींस पहने हुए है।

उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए सीडिया भी नजर आ रही है।

यह तस्वीर पंजाब का लग रहा है।

इस तस्वीर में एक महिला स्कूटी पर बैठी हुई हैं।

यह तस्वीर में एक महिला--

इस तस्वीर में एक पॉलिथीन पर बहुत सारी मरी हुई मछलियां पड़ी हुई हैं।

इस तस्वीर में एक प्रोग्राम चल रहा है।

सारे लोग बैठकर आराम से सुन रहे हैं।

कुछ महिला पुरुष कुर्सियां पर बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक और गिटार नजर आ रहा है जो कि ब्लू कलर का है।

यहाँ पे एक हारमोनियम भी रखी हुई है।

इस तस्वीर में पेड़ भी नजर आ रहा है।

और रंग बिरंगे बिल्डिंगे भी नजर आ रही हैं।

ये जिम काफी खाली नज नजर आ रही है।

यह तस्वीर मस्जिद का नजारा है।

ये खड़ी की दुकानें भी लग रही हैं।

इस भीड़ में एक पुरुष भी नज़र आ रहा है।

यह तस्वीर एक डांस क्लास का लग रहा है।

इस तस्वीर में एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा है।

सीसा के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं।

तरह-तरह की सामाने मिल रही है।

इस तस्वीर में बहुत सारी गिट्टियां नजर आ रही है और चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी लकड़ियों की नजर आ रही है।

मौसम शाम का लग रहा है।

इस तस्वीर में एक डेली नीड सुपरमार्केट भी है।

यह तस्वीर संचेवियर कॉलेज का है।

इस तस्वीर में चार पुरुष बैठे हुए हैं।

दो टेबले भी लगी हुई है।

और टेबल पे सैनिटाइजर भी रखी हुई है।

इस तस्वीर में एक भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं।

यहां पे अधूरा काम भी हुआ है।

इस तस्वीर में बड़े बड़े ग्रिल भी नजर आ रही है।

केवल फैन दीवार पर टंगी हुई है।

इस तस्वीर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगॆ नजर आ रही है।

यह तस्वीर एक पहाड़ के है।

बहोत सारे पुरुष भी हैं।

इस तस्वीर में एक गार्ड भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में तरह तरह की बाइकें भी नजर आ--

जिनकी तस्वीर आधी कटी हुई है।

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट का है।

सुंदर सुंदर बनावटी फूले भी है।

पोस्टर पे सीलिंग फैन डाइनिंग सेट एलईडी टीवी --

पोस्टर लगा हुआ है इस तस्वीर में एक पुरुष पोस्टर की ओर देख रहा है।

चार पांच कुछ बिल्डिंगें भी नजर आ रही हैं।

एक पुरुष कैमरा से फोटो खींच रहे हैं।

बहुत सारे पुरुष लाल टी-शर्टों में बैठे हुए है।

चार पांच छ कुछ बाइके भी नजर आ रही है।